यहां पर पेड़ लगा हुआ है और सफेद लाइटें भी जलती नजर आ रही है।

इस फोटो में सामने यहां पर मैदान दिखाई दे रहा है।

खाने का मेन्यू कार्ड रखा हुआ हैं साथ मैं टिश्यू पेपर भी नजर आ रहा हैं।

और सामने पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

और हरे रंग के पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज मे सामने यहां पर एक मस्जिद दिखाई दे रही है।

इस फोटो में सामने एक दुकान दिखाई दे रही है।

इस फोटो में यहां पर एक नदी दिखाई दे रही हैं यहां पर --

हरे रंग के पेड़ भी लगे हैं।

और सफेद आसमान भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में सामने एक दुकान नजर आ रहे है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक--

इस फोटो में सामने एक इमारत दिखाई दे रही है यहाँ पर --

नजर आ रहा है।

नजर आ रहा है और हरी सब्जियां सामने रखी हुई है।

इस फोटो में सामने यहां पर एक ब्रिज दिखाई दे रहा है।

यह एक छत नज़र आ रही है जहां पानी की टंकी रखी --

यहां पर पंछी का पिंजरा भी दिखाई दे रहा है।